गणेश जी को भगवान शिव जी का पुत्र भी कहा जाता है।

और दूध से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है और बहुत --

अरे वाह मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है।

लेकिन पता नहीं यह इच्छा कब पूरी होगी।

मुझे चाय पीना बहोत ज्यादा पसंद है।

हमारे यहाँ पर भी एक दुकान है जहाँ पर बहुत अच्छे बिरयानी मिलती है।

मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है।

मुझे मैथ्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है और --

कितनी प्यारी फोटो है मुझे यह बहुत पसंद ह।

और कुछ वर्कर छत डाल रहे हैं किसी मकान की।

दिन में पांच नमाजें होती हैं।

पेट्रोलियम के लिए भारत किसी और पर निर्भर है।

जब भी मैं घर की डेकोरेशन वगैरह सजावट वगैरह करता हूँ तो --

पीलो फूलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता हूं।

लेकिन हाथी बहुत कम देखने को मिलते हैं।

ये है आजाद जानवर है इसको आजादी ही देना चाहिए।

फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ बहुत ज्यादा पैसा है।

और ये समस्या बढ़ती ही जा रही है।

आजकल लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते।

मैं रिक्शे की पिछली साइड पर ज्यादा बैठता था।

और आप अगर एक रोज सेब खायेंगे --

और यह धागा भी इन्हीं फैक्टरियों में बनता है।

यह भारत का सबसे अमीर राज्यों में से एक है और यहाँ पर कुछ --

और जब भी जरुरत पड़े निकाल कर --

पत्ता गोभी चावल के रोटी के साथ खानी चाहिए मैं --